चश्मे की दुकान है दुकान पे अलग अलग तरह के चश्मे दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ा सा हॉल है नीचे टाइल्स लगी हुए हैं।

अलग दिखाई दे रही है तीनों शेरवानिया एक स्टैंड पे अलग अलग रखी हुई है।

नीचे मिट्टी है और एक साइड पे एक गड्ढा पड़ा है।

इनको अलग अलग तरह से पैक किया गया है एक टेप रोल पड़ी है।

डब्बे दिखाई दे रहे हैं और सामने एक डब्बे पे सुपर सील लिखा हुआ है।

काली पैंट व्हाइट शर्ट पहने हुए हाथ में थैला सा--

ऊपर एक साइड पे अनार लगे हुए हैं।

नीचे ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ है एक साइड पे गोल टेबल पड़ा दिखाई दे रहा है।

तीन चार लड़के सैलून के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं नेम सैलून नाम का बोर्ड सैलॉन के बाहर लगा हुआ है डेनिम सैलून ।

क्रशर डालने वाली एक साइड पे मशीन नज़र आ रही है।

एक साइड पे एक कमरा बना हुआ है कमरे के बाहर एक छोटी सी--

बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

मेरे सामने एक एक्टिवा दो मोटरसाइकिल दिखाई दे रहे हैं और एक बच्चा साइड पे बैठा है जिसने येलो रंग की --

इसपे एक सिल्वर कलर का पेंट किया हुआ है ये नीचे जमीन पर रखे गए हैं।

इस कार को एलॉय व्हील्स डाले गए हैं।